ये एक किराना शॉप है किराना मॉल है यहां पर पीछे स्टैंड लगे हुए हैं उनमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर चौड़ी-चौड़ी सिड्डियां हैं इस व्यक्ति ने।

पीले रंग का शर्ट और नीले रंग की जींस और जूते पहन रखे हैं।

बकरियां हैं जो घास खा रही हैं इन बकरियां अलग-अलग रंग की हैं सफेद रंग की बूरे रंग की।

अलग-अलग रंग की कपड़े पहन रखे हैं बाहर पास में कई मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई हैं और एक रेडी भी खड़ी हुई है।

यहां पर पानी भरा हुआ है जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है एक घोड़ा यहां पर खड़ा हुआ है।

लेबोटरी का फोटो है यहां पर बहुत सारे बच्चे।

टेबल पर उन्होंने कुछ-कुछ सामान रखा हुआ है एक सिस्टर खड़ी हैं।

लगे हुए हैं लाइटें बहुत ही चमकदार हैं और बीच में देखिए फ्लावर पॉट रखा हुआ है वाट कलर का।

स्कूटी के पास में ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो अपने बालों को बना रहा है।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

यह एक लौंड्री है इस लौंड्री में बहुत सारी सर्विसेस दी जाती हैं जैसे कि होटल लौंड्री

गैस लौंड्री हॉस्पिटल लौंड्री मतलब कि यहां पर सारे काम किए जाते हैं कपड़े ध धोए जाते हैं हर तरह की कपड़ों की --

यह एक बहुत आलीशान घर है।

एक लकड़ी का घर बना हुआ है छोटा सा जिसमें ये रंग-बिरंगे कबूतर बैठे हुए हैं।

एक टेबल है और दो स्टील की कुर्सियां लगी हुई हैं।

तिरंगा लगा हुआ है और जो दो पीछे कुर्सियां हैंवो बैठने के लिए हैं।

लगा हुआ है और पास में ही एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

यह एक किसी घर का वीडियो है।

ये एक चाय की दुकान है।

यहां पर पांच छह गिलास रखे हुए हैं कांच के।

रखा हुआ है जिससे चाय बनाते हैं एक जार भी रखा हुआ है।

ये बच्चों की आर्ट कला है कुछ पोस्टर्स हैं।

पिंक कलर से यहां पर ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक लिखा हुआ है।

बहुत विशाल का है बहुत बड़ा मंदिर है अलग-अलग डिजाइंस में इन सब मंदिरों के बाहर कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई है।

इनके ऊपर आसमान सा नजर आ रहा है जो दिखने में बहुत ही।

यहां पर बैलून लगे हुए हैं कुछ पीले रंग के।

जो बीच में सूट है वह लाल रंग का है और पीले और हरे रंग का एक गाउन लहंगा चुन्नी लगा हुआ है।

एक तिजोरी भी है और टेबल लगी हुई है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

ये एक स्कूल का या।

ये इसके पास एक पेड़ है बहुत विशाल का है।

ये एक कपड़े की दुकान है।

ये एक किराना स्टोर का वीडियो है यहां पर ब्राउन ब्रेड के पैकेट रखे हुए हैं।

कुर्सी पर गद्दी रखी हुई है और उसके बगल में ही कुछ पैकेट्स और रखे हुए हैं।

ये एक सजावट की दुकान है।

दुकान है यहां पर पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं एक व्यक्ति पीले रंग की शर्ट में बैठा है कुर्सी पर एक लड़का बैठा है।

जिसने नीले रंग की शर्ट और पैंट।

अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है गुलाबी रंग की।